इस तस्वीर में दो महल दिखाई दे रहे हैं।

फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ी चल रही है।

जिसके आगे मोटरसाइकिल व स्कूटी पर कुछ लोग बैठे है।

तस्वीर में एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी सीटें पड़ी है।

तस्वीर में एक हॉल दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में दो घर दिखाई दे रहे हैं।